होटल इब्राहम पैलेस दिखा है। बड़ा सा होटल है।

सोफा लगाया हुआ है कोइ बैठा नहीं है ताजमहल जैसा लग रहा है।